यहां पर मोबाइल कवर रखे हुए हैं।

एक बहुत बड़ा पेड़ भी नजर आ रहा है।

चित्र में ब्रिज टाइप का कुछ बना हुआ है।

दूर मे नाफिस जहान लिखा हुआ है।

नीचे जमीन है और ये रात का सीन है।

यह रेड रोज स्कूल का चित्र है जिसका गेट अभी बंद है।

एक बड़ा गेट एक छोटा गेट भी है।

साइडर के अंदर तीन चार आदमी कंप्यूटर पे काम करते हुए दिखा रहे हैं।

बहुत आदमियों की भीड़ भी है।

कुछ औरतें हैं और कुछ आदमी बाइक लेकर उस पार जा रहे हैं ।

जमीन भूरा दिखाई पड़ रहा है।

इसमें एक मूर्ति रखी हुई है।

मंदिज को ऊपर पिंक किया गया है और चारो बगल टाइल्स लगा हुआ है।

ग्रील दिखाई पड़ रहा है जो कि बंद है।

ये किसी छत पर का व्यू है।

बहुत सारे पेड़ भी हैं।

और ऊपर ड्रार में रंग-बिरंगी चूड़ियां रखी हुई हैं जोकि डब्बे में पैक हैं। तेल भी है फेस वॉश भी है।

इस चित्र में एक झोपड़ी टाइप का बना हुआ है जो की बहोत बड़ा है।

ऑरेंज कलर के पीले कलर के और बहोत तरह के फूल बने हुए हैं रखे हुए हैं।

काली काली बादले भी दिखाई पड़ रही है।

दूर में शायद एक टावर भी नज़र आ रहा है।

आधा अधूरा घर बना हुआ है।

पेट्रोल पंप का पीले ब्लू कलर का है तथा ऊपर एक बल्ब भी लगा हुआ है यह रात का सीन है।

कुछ आदमियों ने हेलमेट पहने हुए है।

इस चित्र में एक आदमी लैपटॉप पे काम करता हुआ दिखाई दे रहा है।

तीन चार लैपटॉप रखे हुए हैं।

इस दुकान में ए_सी लगा हुआ है दुकान में एक पंखा भी लगा हुआ है।

एक आंटी ने आसमानी रंग की साड़ी पहनी है।

ब्राउन कलर का कर्टेन लगा हुआ है।

साइड एक अलमीरा में बहुत सारे क्रीम वगैरह रखे हुए हैं तथा बहुत सारे डब्बे भी रखे हुए हैं।

एक लड़की ने ब्लू ग्रीन लहंगे पहने हैं तथा दोनों लड़की येलो और ग्रीन लहंगे पहने हुए--

ये एक दुकान को दर्शाया गया है जिसका नाम श्री स्टाईल ।

लंबे लंबे अ दुपट्टा वगैरा लटका हुआ--